लेफ्ट साइड में पीछे के साइड गार्डन और ग्राउंड जैसा दिख रहा है जहाँ पे एक ग्रीन कलर का बड़ा पेड़ है वहां पे लड़के खेल रहे है छोटे -छोटे।

जेसे की दिखाई दिया है यहा पे ब्लैक कलर की एक लड़ाई है उस के उपर मे एक ट्रे रखी हुई हैं।

यह एक डिनर सेट की फोटो है जिस में चावल रखे हुए है दो अलग-अलग प्रकार के सब्जी रखी हुई है और एक दाल रखी हुईं है।

यह एक एयरपोर्ट रनवे की फोटो है रनवे पे एक प्लेन खड़ा है जिसके दो तीन लाइट चालू है।

जो बहुत खूबसूरत लग रहे है उस के उस के पीछे मे एक ब्लेक कलर की टू व्हीलर स्कूटर है उस के पीछे भी एक रोड है और फॉर व्हीलर वाईट कलर की फॉर व्हीलर जा रही हैं।

ब्लॉकेज कलर में दिख दिखाया गया हैऔर आसमान भी ब्लॉकेज कलर में दिखाया गया है।

यह एक ट्रक का फोटो है ट्रक में बहुत बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हुए है और लाइट्स भी लगे हुए है बहुत बड़े-बड़े स्पीकर लगे हुए है।

गौ माता के पीछे ब्लू कलर की दिवार बनी हुई है दिवार में विंडो है विंडो में से लाइट आ रही है।

पीछे में दो बच्चे दिखाई दे रहे है जिनमे से एक ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और एक ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वो पतीला सिल्वर कलर का है।

यह एक ज़ू की फोटो है जहाँ पिंजरे के अंदर- अंदर दो पक्षी है जो पोपट है।